एक नदी बह रही है और पहाड़ पर घास लगा हुआ है और बगल में कुछ पेड़ लगे हुए हैं और कुछ पेड़ो पर हरे कलर की पटिया लगी हुई हैं फ --

पेड़ लगे हुए हैं उधर की साइड बहोत सारे और एक पहाड़ बना हुआ है पहाड़ पर भी बहोत सारे पेड़ लगे हुए है इधर एक ब बाउन्ड्री बनी हुई --

और म कुछ घर भी बने हुए कुछ घरों का रंग सफेद है कुछ ओ का क्रीम कलर का है कुछ ओ का नीला है तो कुछ ओ का चॉकलेट कलर का है कुछ ओ का सफेद कलर का है।

सामने कुछ घर बने हुए है घरों का रंग सफ़ेद है एक गुलाबी कलर कि छत बनी हुई है एक चोटी सी रैलिंग है।

एक पूस्टर टंगा हुआ है जिसपे राज मेडिकल लिखा स्टोर लिखा हुआ है एल.जी. वगेरा रियलमी वगैरह सोनी म ब्रांड नाम लिखा हुआ है नीचे एक किराने की दुकान है।